चॉकलेटी वाला और बराबर में एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें स्विच लगा हुआ है।

और यहां पर दो स्टूल पड़े हैं।

और यहां पर एक लाइट का थमलस--

यहां पर मंदिर है मंदिर के सारे तरफ पेड़ लग रहे हैं।

और यहां पर गाडी खड़ी है।

दुकान पे यहां पर कट्टे से रखे हैं।

और यहां पर बहुत अच्छे अच्छे पेड़ हैं।

यहां पर बरब्बर में पॉपुलर के है और लाल कलर का भट्ठा है।

उधर अच्छी अच्छी सिलाई मशीन है।

यहां पर एक दुकान सी है उस पर ड्रेसे मिलती हैं।

यहां पर बराबर यहां पर फौजी की ड्रेस सी पैर रहे है।

सा खड़ा है सामने एक बिल्डिंग्स वो दिख रहा है।